जो एक कॉलेज की है जिसके बाहर बच्चों की भीड़ लगी हुई है इसमें कुछ लड़के है तो कुछ लड़किया यहां कुछ बाइके भी खड़ी है।

यहाँ पर हम सफ़ेद और नीले कलर के फुग्गो से एंट्रेंस बनया हुआ है कुछ लोग भी खड़े हुए है।

यहा पर बाइक और साइकिल खड़ी हुई दिख रही है।

यहां हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है ये इमेज मार्केट एरिया की है।

यहां पर एक बस दिख रही है जिसकी छत पर भी लोग सवार है कुछ लोग गाड़ियों से वही कुछ लोग पैदल भी।

यहाँ पर एक घर का कंस्ट्रक्सन करते हुए कुछ मजदुर दिख रहे है आउट साइड काफी और पेड़ और घर है।

यहाँ पर बच्चो के लिए काफी सारे स्वेटर्स आये हुए है जो नीले कलर के है यहाँ पर काफी बच्चे है।